यह ट्यूटोरियल ब्लेंडर 259 में प्रोपर्टिज विंडो के बारे में है
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है और आवाज यश वोरा द्वारा दी गई है
इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हम सीखेंगे कि प्रोपर्टिज विंडो क्या है
प्रोप्रटिज विंडो में सीन पैनल वर्ल्ड पैनल और ऑब्जेक्ट पैनल क्या हैं
प्रोपर्टिज विंडो में सीन पैनल वर्ल्ड पैनल और ऑब्जेक्ट पैनल में विभिन्न सेटिंग्स क्या हैं
मैं मानता हूँ कि आप ब्लेंडर इंटरफेस के बुनियादी तत्वों के बारे में जानते हैं
यदि नहीं तो कृपया हमारे पिछले ट्यूटोरियल ब्लेंडर इंटरफेस का बुनियादी विवरण का अनुकरण करें
प्रोपर्टिज विंडो हमारी स्क्रीन के दाएँ भाग पर स्थित है
हम प्रोपर्टिज विंडो के पहले पैनल और सेटिंग को पिछले ट्यूटोरियल में पहले ही देख चुके हैं
प्रोपर्टिज विंडो के अगले पैनल्स को देखते हैं
पहले हमें अच्छे से दिखने और समझने के लिए अपनी प्रोपर्टिज विंडो का आकार बदलना चाहिए
प्रोपर्टिज विंडो के बाएँ भाग पर बायाँ क्लिक करें पकड़कर रखें और बायीं ओर ड्रैग करें
अब हम प्रोपर्टिज विंडो में ऑप्शन्स अधिक स्पष्टतः देख सकते हैं
ब्लेंडर विंडो का आकार कैसे बदलें यह सीखने के लिए हमारा ट्यूटोरियल -ब्लेंडर में विंडो के प्रकार कैसे बदलें देखें
प्रोपर्टिज विंडो के ऊपरी रो पर दूसरे आइकन पर बायाँ क्लिक करें
यह सीन पैनल है
कैमेरा सीन प्रतिपादन के लिए उपयोगित सक्रीय कैमरा है
यूनिट्स सीन में ऑब्जेक्ट्स के माप को निर्धारित करते हैं
यह ब्लेंडर में एनिमेशन करने के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है
डिफॉल्ट रूप में यूनिट्स नोने और डिग्रीस में सेट है
मेट्रिक पर बायाँ क्लिक करें
अब हमारे सीन के सभी ऑब्जेक्ट्स मीटर में मापे जायेंगे
ग्रेविटी पर नजर रखें
ध्यान दें कि ग्रेविटी की एक्सज यूनिट्स मीटर्स पेर सेकंड स्क्वेयर में बदल गई है
ग्रेविटी उपयोग में आती है जब हम ब्लेंडर में फिजिक्स का उपयोग करके ऑब्जेक्ट्स एनिमेट करते हैं
हम उसे बाद के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे
प्रोपर्टिज विंडो के ऊपरी रो पर तीसरे आइकन पर बायाँ क्लिक करें
यह वर्ल्ड पैनल हैयहाँ हम ब्लेंडर की वर्ल्ड सेटिंग और बैकग्राउंड सेटिंग बदल सकते हैं
ब्लेंड स्काई पर बायाँ क्लिक करेंप्रिव्यू अनुपात रंग में बदलता है
लेकिन 3डी व्यू वैसे ही दिखता है
अतः हमें कैसे पता चलेगा कि बैकग्राउंड वास्तव में बदल गया है
स्क्रीय कैमरा व्यू को रेंडर करने के लिए फ़12 दबाएँ
अब हम बैकग्राउंड में बदलाव देख सकते हैं
रेंडर डिस्प्ले को बंद करें
जेनिथ कलर पर बायाँ क्लिक करें
मेन्यू से रंग चुनें
मैं सफेद चुन रहा हूँ
अब बैकग्राउंड काले और सफेद अनुपात के साथ रेंडर होगा
वर्ल्ड पैनल में अन्य सेटिंग्स हैं एम्बिएंट आक्लूजन एनवायर्नमेंट लाइटिंग इंडायरेक्ट लाइटिंग गाथर मिस्ट स्टार्स
ये सेटिंग्स ब्लेंडर में लाइटनिंग के बारे में एडवांस्ड ट्यूटोरियल्स में सिखाई जायेंगी
प्रोपर्टिज विंडो की ऊपरी रो पर चौथे आइकन पर बायाँ क्लिक करें
यह ऑब्जेक्ट पैनल है
यहाँ सक्रीय ऑब्जेक्ट के लिए सेटिंग्स हैं
डिफॉल्ट रूप से क्यूब सक्रीय ऑब्जेक्ट है
अतः यहाँ सभी सेटिंग्स क्यूब के लिए हैं
ट्रांसफार्म सक्रीय ऑब्जेक्ट की लोकेशन रोटेशन और माप को निर्धारित करता है
लोकेशन के नीचे एक्स 0 पर बायाँ क्लिक करें
अपने कीबोर्ड पर 1 टाइप करें और एंटर दबाएँ
क्यूब एक्स अक्ष पर 1यूनिट आगे बढ़ता है
अतः इस तरह से हम सक्रीय ऑब्जेक्ट को मूव रोटेट और मापने के लिए ऑब्जेक्ट पैनल का उपयोग कर सकते हैं
यह बहुत ही उपयोगी है जब ब्लेंडर में कीफ्रेम्स एनिमेट कर रहे हों
3डी व्यू में कैमेरा पर दायाँ क्लिक करें
ध्यान दें कि लोकेशन रोटेशन और माप के लिए ट्रांसफार्म के नीचे ऑब्जेक्ट पैनल में यूनिट्स कैसे बदलती है
ये चुनित कैमरा के लिए सेटिंग्स हैं
अगली सेटिंग रिलेशंस है यहाँ हम अपने सक्रीय ऑब्जेक्ट के लिए लेयर और पेरेंट उल्लिखित कर सकते हैं
लेयर्स के नीचे दूसरे स्क्वायर पर बायाँ क्लिक करें
कैमरा अब अप्रत्यक्ष हो गया है
वास्तव में यह दूसरे लेयर में स्थानांतरित हो गया हैक्योंकि लेयर अप्रत्यक्ष है कैमरा भी अप्रत्यक्ष हो जाता है
3डी व्यू के तल में बाएँ कोने पर व्यू पर जाएँ
मेन्यू को खोलने के लिए बायाँ क्लिक करें
शो अल्ल लेयर्स चुनें
कैमरा फिर से 3डी व्यू में देखा जा सकता है
लेयर्स बहुत उपयोगी है जब एक सीन में कई ऑब्जेक्ट्स के साथ कार्य कर रहे हों
ऑब्जेक्ट पैनल में रिलेशंस के नीचे पेरेंट पर बायाँ क्लिक करें
पेरेंट सभी 3डी एनिमेशन में उपयोगित अति महत्वपूर्ण एनिमेशन टूल है
हम इसका उपयोग ब्लेंडर एनिमेशन ट्यूटोरियल्स में अधिक करेंगे
क्यूब चुनें
कैमरा क्यूब पर पेरेन्टेड हो गया है
क्यूब पेरेन्ट ऑब्जेक्ट है और कैमरा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है
अब इसका तात्पर्य देखते हैं
3डी व्यू में क्यूब चुनने के लिए दायाँ क्लिक करें
ब्लू हैंडल पर बायाँ क्लिक करें
अपने माउस को पकड़कर रखें तथा ऊपर और नीचे स्थानांतरित करें
कैमरा क्यूब के साथ ऊपर और नीचे स्थानांतरित होता है
क्यूब के लिए नई लोकेशन निश्चित करने के लिए स्क्रीन पर बायाँ क्लिक करें
3डी व्यू में कैमेरा पर दायाँ क्लिक करें
अब ऑब्जेक्ट पैनल में वापस पेरेंट पर जाएँ
पेरेंट पर बायाँ क्लिक करें
अपने कीबोर्ड पर Backspace दबाएँ और एंटर दबाएँ
कैमरा अब क्यूब पर पेरेन्टेड नहीं है
यह वापस 3डी व्यू में अपनी मूल स्थिति में दिखता है
जबकि क्यूब नई स्थिति में ही रहता है
इससे तात्पर्य है कि पेरेन्टिंग चाइल्ड ऑब्जेक्ट की मूल ट्रांस्फार्म सेटिंग नहीं बदलता है
अतः इस ट्यूटोरियल में हमने प्रोपर्टिज विंडो में सीन पैनल वर्ल्ड पैनल और ऑब्जेक्ट पैनल के बारे में सीखा
बाकी के पैनल्स को अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे
अब आगे बढ़ें और एक नई ब्लेंडर फाइल बनाएँ
सीन यूनिट्स को मेट्रिक में बदलें
वर्ल्ड कलर को ब्लेंड स्काई रेड और ब्लैक में बदलें
यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
इस पर अधिक जानकारी इन वेबसाइट्स पर उबलब्ध है
oscariitbacइन और spoken tutorialorgnmeict इंट्रो
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाता है
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ई मेल एड्रेस पर सम्पर्क करें contactspoken tutorialorg हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद